और --

और ये गोरखपुर भी स्थित है और इसकी बहोत मान्यता है ये लोग बहोत मानते भी हैं।

ये बोत अच्छा भी है। बोहोत-बोहोत प्यरा है बोहोत प्यरा।

हाँ क्यूंकि यहाँ पे दीये जल रहे हैं।

ये एक रिवर है और रिवर के पास पुल है।

और कार में स पट्रोल डाल रहे है ताकि कार --

इसलिए कार में पट्रोल डालना बहुत जरूरी है और ये भाई साहब पट्रोल डाल रहे हैं उसमे।

ये एक ये एक मंदिर है और यहां पे हम --

कुछ बहुत सारे काम इसके के थ्रू होते थे तो अब ये --

और यहां पे यहां पे बहुत सारे श्रद्धालू आते हैं।

शायद किसी ट्रिप पे आए हैं और वो लोग अपना अपने बैकग्राउंड के साथ सेल्फी ले रहे हैं उनको मेमोरीज बना रहे हैं ताकि उनको बाद में याद आए --

ये एक सेल्फी लेते हुए की चित्र है।

बोहोत अच्छी-अच्छी चीज हो रही है। बड्डे ओड्डे सब सेलिब्रेट होता है।